उसी के साथ साइड में कुछ लोग खड़े है जिन्होंने रेड वाइट ब्लैक कलर शर्ट पहना हुआ है और टोपी पहनी हुई है जो कि येलो कलर में हमें दिखाई दे रही है।

''इस चित्र में हमें एक मैम दिखाई दे रही है एक टीचर दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने शर्ट पहना हुआ है और मैम ने साड़ी पहनी हुई है अ रेड कलर की ।''

''चित्र में हमें दो मैम दिखाई दे रही हैं और कुछ छोटे से बच्चे हैं जो की नीचे एक पंक्ति पर बैठे हुए हैं।''

''इस चित्र में हमें एक मैम दिखाई दे रही हैं | यहाँ पर छोटे बच्चों की लाईन बनी हुई है जो कि छोटे बच्चे नीचे बैठे हुए हैं लाईन सेऔर वो कुछ अ.अ पेपर के इस्तेमाल से कुछ क्रिएटिव चीजें बना रहे हैं।''

यहाँ पर दो डोर है | दो-तीन से खिड़कियाँ हैं जो कि ओपेन हैं।